उप्पर वाली लाइन में बहोत सारे प्रोटीन पाउडर के डिब्बे और उससे नीचे वाली लाइन में बहोत सारी दवाइयां हैं।

यहां पर उन से संबंधी बहुत सारे चीज़ें रखी हुईं हैं।

ये एक साइकिल की दुकान है।